इसमें एक बहोत बड़ा ग्राउंड दिख रहा हैं।

एक लड़का पहाड़ के ऊपर जा रहा है।

एक आदमी पहाड़ के ऊपर खड़ा है।

कुछ पौधे सुखे दिखाई दे रहे हैं।

एक आदमी के हाथ में माइक है।

इसमें टेबल पर कंप्यूटर्स रखे हुए हैं।

बहोत सुंदर-सुंदर डिजाइंस के हैं।

और इसके आगे चारा रखा हुआ है।

इसमें कुछ डब्बे एल_इ_डी के हैं जो काले रंग के हैं।

आसमान भी दिखाई दे रहा है।

इसमें एक कमरा दिख रहा है जिसके बाहर दो अलमारियां रखी हुई हैं।

यह एक ऑफिस का कमरा है।

गाएं बैठी हुई है और भैंसे खड़ी है।

इस कमरे में परदे लगे हुएं हैं।

इसमें एक ग्राउंड दिख रहा हैं जिसमें एक शेड लगा हुवा हैं।